इसमें से दो दरवाजे का कलर ग्रीन है और एक का वाइट है।

इसमें कुछ येलो कलर की गिरी हुई गोल सा है और नीले नीले आसमान भी --

और साइड में एक औरत भी खड़ी हुई है इसके पीछे स्लिप पे बहुत सारी डेकचिया नजर आ रही हैं।

इस दृश्य मे हमें होटल नजर आ रही है।

और उसके पीछे ग्रीन कलर का बाउंड्री भी नजर आ रहा है।

और उसके पीछे पेड़ भी दिखाई दे रहा है।

और सीलिंग पे एक फैन लटक रही है और कुछ लाइटे भी दिखाई दे रहा है।

और उसपे ब्लैक कलर की सीढी़ भी बनी हुई है।

जो रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए हैं।

इस पे कुछ लोग खड़े है और कुछ लोग बैठे हुए दिखाई दे रहे है।

और उसके जमीन पे आसमानी और रेड कलर की कारपेट बिछे हुए हैं।

और साइड में कुछ घर भी दिखाई दे रहा है।

दृश्य में एक बहुत बड़ी बिल्डिंग नजर आ रही है उस वो बिल्डिंग व्हाइट कलर की है।

और इसके नीचे दो आदमी खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं।

और बांस का सीढ़ी भी लगा हुआ है।

और उसके पीछे कुछ समान वगैरह भी नजर आ रहा--

और उसके ऊपर नीले कलर का गोल सा बनाया हुआ है।

इस दृश्य में एक रूम दिखाई दे रहा है जिसकी दीवार व्हाइट है और उसपे ग्रे कलर की पर्दे भी लगी हुई--